में स्थित एक चौराहा है इस चौराहा के चारों तरफ काफी--

साथ में एक क्रॉस करके इस साइड आ रहा है।

यहां पर मोर पंख से काफी सुंदर डेकोरेशन की हुई है।

उसके लिए कई राखियां पूछ सकते हैं यहां पर राखी काफी कम रेट पर उपलब्ध है।

यहां का स्टाफ काफी कॉरपोरेटिव है।

यह इस्ट यह कई अ महत्वपूर्ण सिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है।

ग्रीन और पिंक और वाइट कलर से पेंट किया गया है।

भी रखे हुए हैं एक लेडी बैठी हुई है साइड में।

यह एक स्टील के बर्तन का शोरूम है यहां पर आपको हर स्टील के आइटम --

यहां पर कार को एक मशीन के ऊपर रखा गया है और उसको--

स्टुल बिछे हुए हैं यहां पर बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ विजिट कर सकते हैं और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं।

यह किसी ऑफिस के बाहर का व्यू है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

ये संस्कृत स्कूल कोहाना रोल्ड पर है।

यह स्कूल का कैंपस काफी बड़ा कैंपस है यह स्कूल आज कल रोहतक में माने जाने जाने माने स्कूल में माना गया जा रहा है।

इस फोटो में फूल माला टंगी हुई--

यहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो।

जैसे कि यहां पे ग्रॉसरी का सामान मिलता है परफ्यूम मिलते हैं।

यह बिल्डिंग काफी बड़ी है और उसके सामने भी काफी बिल्डिंग --

इस फोटो में एक बस के साथ--

यहां पर तरह तरह के कॉम्पिटिशन समय समय पर होते रहते हैं।